यह पिक्चर सब्जी और फल की दुकान की है इसमें एक साइड केले रखे हुए हैं।

यह पिक्चर एस_जी इंटरनेशनल स्कूल की है।

ये पत्थर के स्टैचू की एक प्रतिमा बनी हुई है जिसमें--

यह फोटो एक नर्सरी के बाहर की है यहां पर बहोत सारे पेड़ रखे हुए हैं।

ऊपर एक बोर्ड लगा हुआ है जिस पर नर्सरी का नाम लिखा हुआ है।

इसमें फूलगोभी आलू लहसन प्याज सब चीजें रखी हुई --

यह पिक्चर एक जिम की है यहां पर एक्सरसाइज करने की बहोत सारी मशीन --

आसपास में बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं झूलों पर बच्चे --

बहुत सारे पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

यहां पर खाने की टेबल लगी हुई है।

यह पिक्चर एक नर्सरी की है यहां पर बहोत सारे पौधे रखे हुए हैं।